इन कंप्यूटर बहोत ही अच्छे होते हैं यहां पर लोगो सभी कंप्यूटर खरीदने निकल जाते हैं।

यहां एक घर है जिस पर लाल कलर का पेंट हुआ है यहां पर रविदास की मूर्ति उतरी है और एक भीमराव की भी तस्वीर उतरी है.

लाइटे भी लगी हुई है और सफेद कलर की पुट्टी भी की हुई है जिससे की और बेस--

यहाँ एक के डी एम् का शोरूम है जो कि लाल कलर की पे टी एम् खड़ी हुई है इसके पीछे पत्थर भी लगा हुआ है जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है.

यहां पर शीशे लगे हुए हैं और भी अच्छे लग रहे हैं यहां पर चारों तरफ काम ही काम चल रहा है.

यह छोटी-छोटी बिल्डिंग है जो गरीबव्यक्ति के लिए बनाई जाती है यहां पे सभी प्रकार के लोग रहते हैं पेड़-पौजे खड़े हुए हैं बहुत अच्छे साफ-सफाई भी की हुई है.

काम कर ने वाले लोग यहाँ पर पोस्टर लगे हुए है गेट भी लगे हुए है उसके सामने एक व्यक्ति खड़ा है जो जो देख ने में --

और काम बड़ा अच्छा चलता है यहां पर आइटम भी मिलते हैं और फूल के साथ साथ यहां पर फंखे कूलर टी_वी सब कुछ मिलता है यहां पर--

ये डेकोरेशन बड़ी अच्छी की हुई है लाइटें भी लगी हुई है चादर भी बिछी हुई है यहां पर शाम का टाइम --

और यहां पर बिस्तर भी रखा हुआ है एक मेज रखी है एक बेजब भी रखा हुआ बहोत अच्छे से डेकोरेशन की हुई है।

जो कि रे बहुत ही अच्छी लग रही है यहां पर लाइट कलर भी अच्छी हुई है पंखे भी लगे है इसबार--

अच्छा भी लग रहा है और बहुत ही प्यारा भी लग रहा है यहां पर अच्छी डेकोरेशन भी की हुई है कई सारे लोग होना हैं मा --

एक औरत जा रही है एक आ रही है और लेडिज जा रही है कुछ भी नहीं मिल रहा है।

इसके ऊपर एक गरम नार रखा है इसके ऊपर एक टंकी रखी हुई है जो कि लाल कलर की टंकी है सब अच्छे से डेकोरेशन की गई चारों तरफ बहत अच्छे पीले कलर का पेंट भी किया हुआ है।

बहोत ही स्वादिष्ट चीजें बनती हैं बहोत अच्छे लग रही हैं सभी प्रकार के यहां पर आइटम हैं जो भी खाने से रिलेटेड आइटम है।

कोई इंटरलॉकिंग सड़क लगी हुई है और सामने एक बोर्ड दिखाई दे रहा है चार तरफो की लाल कलर की ईंटा से--

यहाँ एक गाड़ी है पूरी तरह चखना चूर हो गई है यहां गैरेज में खड़ी हुई है.

बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा और उसमे बहुत ही अच्छा डेकूरेशन भी खिचनी पड़ेगी।

यहां पर कंप्यूटर लगे हुए हैं यह देखने में बहोत अच्छे लग रहे हैं यहां पर चारों तरफ बहोत ही ज्यादा तार वायर पड़े हुए है।

कुछ बहत ही ज्यादा सॉफ्ट की जाती है लगा हुआ है ऊपर चादर भी बिछाई गैहै है --

यहां एक व्यक्ति है जो कि कुछ काम कर रहा है काम के साथ-साथ इसने एकहथोड़ा भी रखा हुआ है जो कि लाल कलर का पेंट हुआ है.

ये सफेद कलर की बुर्सट पहन रखी है जो कि सफेद कलर बहुत ही अच्छा कलर है देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है इसमें नीले कलर की --

चारों तरफ बहुत अच्छा डेकोरेशन की हुई है फल फ्रूट भी रखे हुए हैं कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं कुछ खा रहे हैं कुछ पी रहे हैं।

और कुछ चीज देख रहे हैं यहाँ पर बड़ी एलसीडी लगी हुई है मैच मुच् का सिस्टम बना रखा है जो जो बहुत ही मजा आ रहा है.

यहा एक समुन्दर है समुंदर में कुछ व्यक्ति खड़े हुए है देख रहे हैं यहां और एक नाओ भी खड़ी हुई है जो देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है.

जो की उम्र उजाला की तरफ से चल रही है उम्र उजाला का बहोत ही अच्छा रहा है जिस पर दिन ब दिन अच्छे-अच्छे खबरें आती है जिसे पढ़ने से --

यहा और कुछ खड़े है और उपर के साइड मे फूल भी है जो नीले कलर का फूल है जो कि बहोत अच्छा लग रहा है।

यहां पर सभी प्रकार का समना मिलता है होल सेल मे यहां पे समान मिलता है।